अपने दोस्त यारो से मेम लोग लग रहा हैं ।

शायद कुछ सीख राहा है कुछ नया अट्रॅक्टिव इससे बच्चे काफी लगन से बैठे लाईन से रोव में अपने--

दोस्तो जैसा की हम देख पा रहे है यह एक ब्रिज है और सामने तालाब भी हमको नजर दिख--

इसके बीच मे एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है जो इसके सुंदरता को और आक्रमक बनाया जा रहा है और दूर जो हमको यहाँ से एक जंगल दिखाई दे रहा है।

भी नजर आ रहा है और सूर्य देवता भी नजर आ रहे है सूरज अपनी और लग रहा है सुबह का टाइम है दोस्तो इस चित्र को देखकर सुबह सुबह